एक बहोत ज्यादा सुंदर कान्हा जी--

हे यहां सलून बोहोत ज्यादा बड़ा नजर आ रहा--

है जैसे कि बुलडोजर और--

मुझे भारत का स्तंभ अशोक--

की ज्यादा बड़ा नजर आ रहा--

है जो की फोटो खींचा--

मुझे एक बहोत बड़ा होटल नजर आ रहा--

बड़ी लॉन्ड्री दिख रही है लॉन्ड्री का नाम फेम--

की ज्यादा बड़ी दिख रही--

रहा है इसका नाम एक्स-रे हाउस एंड इमेजिंग सेंटर है।

ज्यादा बड़ा मैरिज हॉल दिख रहा है।

मुझे एक बहोत ज्यादा सुंदर सा शादी का--

की डस्टिंग की दुकान दिख--

बड़ा कार का कारखाना दिख रहा है।

बहुत बड़ी और अच्छी लग रही--